ये सामने एक बड़ा सा मैदान नजर आ रहा है जो की एक क्रिकेट मैदान है मैदान के चारो तरफ बड़े बड़े एक लाइट भी लगी हुई है मैदान के चारो तरफ खाँचा से पूरा घिरा हुआ है।

बड़ा सा स्टेशन नज़र आ रहा है जिसका छत की है हम्म स्टेशन मैं बहुत सरे लोग भी नज़र आ रहा है।

चारो तरफ हरे हरे बड़े बड़े पेड़ पौधे दिख रहा है एंड दूर एक बडा सा लाइट का पोल भी नज़र आ रहा है आसमान नीला एवम सफ़ेद मेघ से ढाका हुआ है।

यह महल का दिवार बहुत ही निचाई है आसमान नीला एबम सफ़ेद बर्फीले जेसे ढका हुआ नजर आ रहा है।

एंड घुसते ही एक बड़ा सा टेबिल है दुकान सायद अदबिस्तार की है दुकान की दीवार का रंग पीला कलर का है।

उनके बगल में एक और दुकान है जो कि शटर डाउन है जिसका शटर सफ़ेद कलर का है उनके दुकान के बहार भी बहुत सारा पोस्टर टंगा हुआ नजर आ रहा है।